ये घर में तीन ठो लाइट बल्ब भी जला के रखा हुआ है।

घर का अंदर में कुछ भगवान का मूर्तियां भी बनाके रखा हुआ है।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

रूम का अंदर में बहोत सारा कप और ट्रॉफी भी रखा हुआ है।

और अलग रूम का अंदर में बहुत सारा भगवान का मूर्तियां भी बनाके दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे बंबू का लाइट पोस्ट भी लगा के रखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारा भगवान का मूर्तियां भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे पांच थु अंडा प्लेट भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर दो तू बिस्तर भी बनाके दिखाई दे रहा है।

एक आदमी का फेस ब्लर करके है।

सामने में दो ठु कोल गास भी रखा है।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

यहां पे बहोत सारा दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में टेबल और सोफा भी दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर स्कूटी और कार भी पार्किंग में दिखाई दे रहा है।

घर का बीच में पपाया का पेड़ भी एक ठो दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में एक सुंदर सा जगह दिखाई दे रहा है।

ऊपर में रेड कलर का तारा भी लगा के रखा हुआ है।

ये फोटो में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

रूम का ऊपर में दो ठो फैन भी दिखाई दे रहा है।

घर का ऊपर का सीढ़ी भी बना के दिखाई दे रहा है।

सामने में रोप भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।